यहां आस-पास पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे है। येहे पथरीले इलाकों से नीचे की तरफ आ रहा है।